सामने ऑफिस नजर आ रहा है जिसकी दीवाल का कलर व्हाइट है दीवार में ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर ब्लैक एग्जॉस्ट फैन नजर आ रहे है जिसके साइड में फैन लगा है।

व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

सामने व्हाईट कलर का फॅन हैं जिसके बाजू पोस्टर लगा हुआ हैं ब्राउन कलर के टेबल में लॅपटॉप पड़ा हुआ नजर आ रहा--

सामने एक हॉल नजर आ रहा है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट है।

ब्राउन कलर का दरवाजा दिख रहा है अंदर ब्राउन और वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है बाथरूम में।

सामने एक हाल नजर आ रहा है जिसकी दीवाल का कलर व्हाइट है।

सामने एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

सामने स्टेज बना हुआ नजर आ रहा है स्टेज में ब्लैक कलर का दरी बीचा हुआ है जिसमें लड़कियां डांस कर रही हैं।

ब्राउन कलर का दरवाजा है जिसने दो ताले लगे हुए दिख रहे हैं।

जाते हुए दिख रहे हैं बाहर एक कुर्सी है।

दीवाल के सामने में एक कैमरा लगा हुआ नजर आ रहा है।

टी शर्ट पेहने लड़का दिख रहा है।

जिसमें ब्लैक कलर के गेट दिख रहे हैं जिसके अंदर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं।

कांच के बहोत सारी कप्बोर्ड बने हुए है सामने वाइट रंग का और पिंक रंग का --

टेबल नजर आ रहा हैं जिसके ऊपर कांच बना हुआ दिख रहा है बहोत सारे कबर्ड में समान नजर आ रहे हैं।

टॅग ब्लॅक चेयर लगी हुई नजर आ रहीं हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं।

फ्लोर में बहोत सारे शॉप नजर आ रहे हैं।

एक पेड़ लगा हुआ दिख रहा है जिसके बाजू बहोत सारे गाड़ी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।